इस चित्र मे एक जगह नज़र आ रही है जहा पर कई सारे घर दिखाई दे रहे है कुछ ऊंचाई पे एक मैदान भी नज़र आ रहा है।

साथ मे कुछ कुर्सिया भी नज़र आ रही है जिनके आगे कुछ मेज़ रखे हुए दिख रहे है।